नदी है जो बहौत सारे लोग पूजा कर रहे हैं कुछ नदी से बाहर निकल रहे हैं और एक पुल है जो सफ़ेद रंग की है और पुल के ऊपर बहौत सारे लोग खड़े हुए हैं।

दुकान है दु-दुकान के बाहर एक बोरी रखी हुई है दुकान के सामने से एक आदमी जा रहा है जो सफ़ेद रंग का शर्ट पहना हुआ है दुकान के सामने एक कार खड़ी हुई है कार के अंदर कुछ सफाई हो रही है।

बहौत सारे अगल-बगल पत्थर हैं बिच में गुफा है जो एक आदमी जा रहा है गुफा की अंदर और एक फोटो ले रहा है जो सफ़ेद रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर का लोवर पहना हुआ है।